यहाँ जो है यहाँ कुछ रात का फोटो लिया गया है। कुछ पार्क या गार्डन है।

और बहुत सुन्दर दिख रहा है जो उसमें पेड़ जो लगा है उसमें जो बलब जो फिट कर दिए है वो कलर को परिवर्तन कर रहा है।

यहा पे हिंदी भाषा है या इंग्लिश भाषा ये तो मुझे पता नहीं हैं बाकि इसको हम लोग फ्लोवर बोल ते है और जो डी_ जे लगा है डी _जे के जो--

और यहाँ अगल-बगल पेड़ है पौधा है और इस पानी ऐसे लग रहा है की यह पानी बहोत ठण्ड होगा।

यहाँ गाड़ी का शोरूम है। यहाँ गाड़ी दिख रहा है।

यहाँ एक अ समुन्दर या कुछ--

यहाँ एक गाँधी स्टेडियम है और यहाँ हो सकता है अम्बिकापुर साइड का हैं क्योंकि गाँधी स्टेडियम अमरिकापुर में है।

विश्वरत्न गौतम बुद्ध का जो मूर्ति है उसमे और बगल में भी जो तस्वीर है गौतम बुद्ध का ही है।

ए लगभग-लगभग सौ-दोसों साल पुराना ही है।

यहाँ एक फल का दुकान है। यहाँ केला है और यहाँ सेव संतरा और आमा भी है।

और यहाँ सेव का एक सौ चालीस रुपये किलो है।

मतलब यहाँ जाने के लिए इजाजत लेना पड़ेगा या हो सकता यह गर्ल्स हॉस्टल हो या स्कूल हो।

हवा पानी पीने के लिए ये कुछ बहुत अच्छा रहता है ये कचुवा--

यहाँ गिट्टी-उट्टी लगा हुआ है और यहाँ कुछ बिल्डिंग बनने वाला है और यहाँ कम से कम छे या सात टेटर गिट्टी गिर गया हैं।

यहाँ माता दुर्गा जी का बृजमान है।